इस पिक्चर में मुझे बड़े बड़े घास दिख रहे हैं।

और इस कैंटीन के अंदर छे लड़के दिख रहे है।

जिसमें दो इंसान दिख रहा है।

और एक रबर जिम बाल भी दिख रहा है।

इस पिक्चर पे मुझे घर का अंदर दिख रहा है।

और उस ऐ_सी के नीचे एक बड़ा सा फोटो फ्रेम भी है।

घर के पीछे बहुत बड़ा नदी भी दिख रहा है।

और ग्राउंड पे गाड़ी भी पार्क किया गया है।

और यहां दो इंसान का फेस ब्लर किया गया है।

बहुत सूखे पत्ते भी दिख रहा है।

और दुकान के अंदर एक चेयर भी दिख रहा है।

इसमें बहुत सारे इंसान भी दिख रहा है।

और स्पीकर भी दिख रहे हैं।

और उसके बगल पे एक इंसान खड़ा किया गया है।

इस पिक्चर पे एक लड़की इंडिया झंडा पकड़े हुए हैं।

और एक इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिख रहा है।

घर के ऊपर चेयर भी दिख रहा है।